उसी के बगल में खड़े एक सरदार जी हैं सरदार जी ने पगड़ी पहनी हुआ है।

जमीन में भी बहोत गीली दिख रही है ऊपर सफेद आसमान दिख रहा है।

ऊपर बहुत सारे गुंबज में लाइट भी लगी हुई है।

और बहुत सारे गुंबज में पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

चारों साइड हरी भरी नीली पीली लाइट दिख रही है ।

अगल-बगल बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं जो माता रानी का दर्शन करने आए हुए हैं।

उसके नीचे एक रूम में छे टायर रखे हुए हैं।

टायर के किनारे एक पीली कलर की पट्टी बनी हुई है।

इस चित्र में हम एक कार के शोरूम को देख रहे हैं।

सीमेंट के टीले पड़े हुए हैं किनारे किनारे ईंटों के भी टीले पड़े हुए हैं।

इस सुंदर चित्र में फूल की माला का डेकोरेशन किया गया है।

ऊपर साइड चौकोर खांचे में पीले गेंदा के फूल सजाए गए हैं।

दोनों किरानों में मोर नुमा युक्त एक पॉट भी रखा हुआ हैं।

इस चित्र में हम एक लाल कलर की कार देख रहे हैं कार के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है।

लाल कलर की कार के पीछे एक सफेद कलर की भी कार खड़ी है ।

किनारे किनारे छोटे छोटे हरे हरे पेड़ दिख रहे है।

एक टी_वी में सूर्य का चित्र है एक टी_वी में फूल का चित्र है।

कुछ और भी लिखा हुआ है और किनारे साइड साइड में बहुत फलदार पेड़ दिख रहे हैं।

वह महिला कुर्सी में बैठी हुई है उसके सामने एक सेंटर टेबल रखी हुई है।

दुर्गा जी के प्रतिमा में नीचे राक्षस भी दिख रहा है।

दुर्गा जी की प्रतिमा में दो भगवान और अलग-अलग दिख रहे हैं ऊपर नीला आसमान दिख रहा है।

इस चित्र में हम कार का एलॉय व्हील भी देख रहे हैं।

नीचे हमको काले काले टायर भी दिख रहे हैं।

ऊपर साइड हमें कुछ हल्के कलर के काले भेल दिख रहे हैं।

में हम कई सारी मूर्तियों का संग्रहालय देख रहे हैं ।

हमने पांच प्रकार के हेडफोन लगे हुए हैं।

पाइप के किनारे काउंटर में बहुत सारे उपकरण रखे हुए हैं।

मशीन के नीचे हल्की ग्रे फर्श भी दिख रही है।

फादर सफेद कलर का कपड़ा पहन के खड़े हुए हैं।

पीछे एक व्यक्ति कागज रखा हुआ है सफेद कलर का--

जमीन की मिट्टियां गोल्डन कलर की दिख रही है।

यहां पर बहुत कलरफुल फूल मालाएं दिख रही हैं।

इस पिक्चर में हम एक भवन को देख रहे हैं भवन के बाहर आउटडोर लगा हुआ है ए_सी का--

के बगल में एक बोर्ड लिखा हुआ है ऊपर पंजाब लिखा हुआ है।

जहां पंजाब लिखा हुआ है उसके नीचे खिड़की भी बनी हुई है--

एक स्कूटी भी खड़ी हुई है स्कूटी की लाइट जल रही है --

तीन फ्लोर की बिल्डिंग भी दिख रही है दो फ्लोर में प्लास्टर नहीं --

एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है एक काउंटर भी लगा हुआ हैं --

जरी रंग बिरंगी कलर की दिख रही है एक सोफा सेट भी रखा हुआ है --

इस चित्र में हम एक जिम ग्लास को देख रहे है।

और सफेद कलर के टी शर्ट पहना है। ब्राउन कलर की पेंट पहना है।

इस चित्र में हम सामने एक प्लेट देख रहे--

सामने एक सेंटर टेबल रखी हुई है सेंटर टेबल के पीछे एक सोफा सेट रखा हुआ है।